और यहां पे एक बहोत बड़ा सा छाता है जिसमें बहोत सारे कलर्स है।

और यहां पे एक आसमान भी है जो खुला आसमान वो सफेद रंग का है।

और यहां पे बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है यहां पे एक टेबल भी है छोटा सा सफेद रंग का।